ये टेंट लगा हुआ है।

यहां पे एक पीले रंग का चेयर लगा हुआ है।

कुआं टाइप का भी बना हुआ है कुआं जैसा आकृति दिया गया है।

चुनरी से ओढ़ाया हुआ भी कोई जगह है।

इनका चेहरा बन्द भी छिपाया गया है और दो तीन आदमी का चेहरा दिख भी रहा है।

यह जगह बर्डे पार्टी की है।